लाइब्रेरी में खड़ा हो कर के फोटोशूट करवा रहा है और इसके पीछे बहुत सारी जो बुक्स है वो दिख रही हैं।

और बड़े डिज़ाइन के साथ सनमइका को लगाया गया है जिससे लग रहा है की तरंग गर जैसा दिख रहा है।

ए एक ऑटो खड़ा है ऑटो का ऑटो में हरे रंग का कुछ डिज़ाइन दिया गया है ।

यह एक ई रिक्शा है और हल्के आसमानी कलर का ये ई रिक्शा है।

ये एक अ घर ढलाई हो रहा हैऔर इसका रूफ बनाया जा रहा है।

आ प्रकाश विभिन प्रकार के बल्ब से यहाँ पे आकर्षण का केंद्र ये बना हुआ है।

और कुछ-कुछ बिक्री भी हो रही है।

यह एक किताबो का दुकान है आ और विभिन्न प्रकाशनो के किसी भी प्रकार का बुक यदि आप यहाँ पे खरीदना चाहे तो आप खरीद सकते हैं।

सीमेंट भी नहीं किया गया है बिल्डिंग के ठीक नीचे मैदान है जो घास का मैदान है छोटे-बड़े घास उगे हुए --

मनाया जा रहा है बर्थडे सेलिब्रेशन की जा रही है।

रहा है जिससे यह लग रहा है कि तारे टिमटिमा रहे हैआकाश में ।

और मैदान पर कही-कही घास जम जन्मे हुए है एक विशालकाय वृक्ष भी है हरे रंग का पत्ता है इसमें घना पत्ता है ।

छत ढलाई हो रहा है और छत ढलाई हो चुकी है सिर्फ --